यहां पर एक मेम बैठी है लड़की है जो की टेबल पर एक कॉपी के ऊपर कुछ लिख रही है।

ये एक सामने छोटा सा ऑफिस जा लग रहा--

पीछे कुछ तीन लोग बैठे हैं जज लग रहे हैं।

ऊपर भी एक ग्रिल सी बनी हुई है लोहे की लाइट जिग रही है।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

साइड में कुछ लेडिस खड़ी हुई है।

साथ में कुछ पा अ सीढ़ियां भी लगी हुई है।